यहाँ पर एक हिरण खड़ी हुई है जोकि बहुत ही सुन्दर दिख रही है।

और बहुत ही खुबसूरत लग रहा है इस बिलडिंग पर लिखा हुआ है जे.के. मुल्टी पलै ----

फिल्म का पोस्टर लगा हुआ है।

यहाँ पर छठ हो रहा है और यहाँ पे काफ़ी लेडीज और जेन्ट्स खड़े हुए है और यहाँ पे दीप भी जल रहा है।

सामने एक पूल भी है और एक--